आप यहां एक तस्वीर देख सकते हैं यहां बहुत सुंदर सा नजारा दिख रहा है ये बहुत बड़ा पहाड़ है इस पर पेड़ और पौधे लगे हुए हैं।

यहा एक शॉप देख सकते है इस शॉप मे बहुत सारे कपड़े रखे हुए है जीन्स के सूट भी लगाया हुआ है।

और यहाँ बहुत सारे फूह अ झाड़ भी है पौधे भी है बैठने के लिए जगह भी है घर भी है लाइट भी है।

आप यहाँ एक दुकान देख सकते हैं सेवेनत हेवन का दुकान है।

लोग खड़े हुए हैं साइकिल पर जा रहे जा रहे हैं पैदल भी जा रहे है बैठे हुए है लोग।

कुछ लोग बैठे हुए हैं और टीवी भी है लाइट भी है।

हा एक एक पिक्चर देख रहे है इस पिक्चर मे एक बिछ मे मस्जिद है मस्जिद का गुंबज है आसपास बहुत ही घरे है।

आप यहा एक निक चित्र देख सकते है इस चित्र मे मस्जिद है मस्जिद मे मीनार और कुंबस भी दिखाई दे रहा है।

यहा एक तस्वीर देख सकते है तस्वीर में कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहा है लोग काम कर रहे है एक आदमी फोन पकड़ कर खड़ा हुआ है और दूसरे लोग काम कर रहे है।